पेड़ है आसमान दिखाई दे रा है। पीछे बैठने के लिए जगह है और एक ऑरेंज कलर का डस्टबिन है।

वो खड़ी है उसके सामने एक और लड़की व्हाइट कलर की--

और दो झंडे है उसके सामने दो आदमी बैठे हैं एक के हाथ पे--

पीछे बहोत सारे गाड़ी खड़ी हुई है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है।

पेड़ दिख रहे है। सूर्य की किरणें दिख रही है पीछे एक आदमी जो है अपना बाल ठीक कर रहा है।

डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन विप्र आर्ट्स कॉमर्स एंड फिजिकल एजुकेशन कॉलेज रायपुर में है इसका बोर्ड है।

ये कपड़ा शॉप है यहां पे बहुत सारे चेयर है।

ब्लैक कलर का पानी टंकी दिख रहा है।

यहां पे एक लेडिस है जो मल्टी कलर का दुपट्टा लगाई है बाल खुले हैं।

और एक आदमी है जो फोटो ले रहा है एक आदमी जो है--

ओ फोटो खींच रहा है लाइट जल रही है।

ये चर्च का सीन है यहां पे--

रेड ग्रीन कलर का लाइट है।

और एक भगवान है जिसके हाथ में गदा है।